मैं एक रूम में बहोत से फूल को देख रही हूं जो देखने में बहोत सुंदर दिखाई दे र--

और कुछ अंदर इसमें लोग बैठे हुए है कुर्सी है और कुछ यहां फूल भी दिखाई दे रहा पेड़ पौधा--

मैं यहां पे चौधरी चंपारण रेस्टोरेंट को देख रही हुं जो मुरादाबाद--

जो की रेलवे स्टेशन में कुछ लोग--

में यहां पे एक बहोत बड़ा सा पार्क को देख र--

यहां फोर व्हीलर खड़ी हुई है उसके पीछे भी कई गाड़ी लगी हुई है और यहां पे कुछ समानें --

एल्यूमिनियम का दिखाई दे रहा है कुछ मड़ई दिखाई--